ये एक बस स्टैंड की तस्वीर है जहाँ पर बस स्टैंड पे--

ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर की सामने तस्वीर दिखाई दे रही है जो की एक डिपार्टमेंटल स्टोर है।

और साथ में ही सामने एक कुर्सी पर लोग बैठे हैं।

यहां पर एक लोटस की आइस क्रीम की दुकान है जो की बहोत ही बड़ी दुकान है उसके साथ बाहर कुछ लोग बैठे हैं।

सामने एक जनता डेरी की दुकान है जहां पर जनता डेरी में बहुत कुछ--

यहां पे एक दाढ़ी वाला दाढ़ी कटवा रहा है और साथ में मुछा वाला मूंछ कटवा रहा है।

स्कूल का एंट्री गेट का कलर जो कि नीला कलर है।

और उसी के साथ कुछ लोग भी खड़े है जो कि बस पे चढ़ने के लिए खड़े है।

ये एक मच्छी मार्केट है जिसमें की बहुत सारी मच्छियां--

जोकि ये बहोत ही अच्छे लग रहे हैं उसी के साथ कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं।

यह एक झील का जो कि झील के किनारे की भी तस्वीर है जहां पर झील का पूरा नज़ारा दिख रहा है पूरा व्यू जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

पार्क में पूरी पार्क में एक व्हीकल खड़ा है सामने कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

और सामने ही एक एल_सी_डी भी लगी हुई है जिसमें देखकर यहां पर लोग योगा कर रहे हैं।

यहां पर सामने ही अ कुछ कैफे है कैफे में कुछ तस्वीर लगी हुई हैं जहां पर बर्गर पिज्जा --

और यहां पर बच्चे लगे हुए हैं साथ में खेल रहे हैं।

बहुत ही अच्छा व्यू है ये पार्क का व्यू है अह उसके सामने मंदिर है।

और इसके पीछे पार्क बनी हुई है पार्क में बहोत सारीयां और भी गाड़ी खड़ी है।

सामने पीछे एक दरख्त भी लगा हुआ जो कि एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है बहोत ही बड़ा यह पेड़ लगा हुआ है। उसके साथ कुछ लोग भी खड़े हैं।

सामने ए_टी_एम लगा हुआ एस_बी_आई का ए_टी_एम है उसी के साथ खाली जगह है खाली प्लॉट में बहोत सारी झाड़ियां और खाली पौधे लगे हुए हैं।